तीन झूलने वाला रखे गए है जो नीले रंग की है पीले रंग की टाट बिछी हुई है गार्डन है हरी घास है पेड़ है भूरे रंग के सफ़ेद रंग की है।

एक डिब्बा रखा गया है जो नीले रंग की है फर्श की गई है सफेद अ हरे हरे रंग की पत्ती है बाइक है जो हरा रंग की है सामने के साइड पे एक बड़ा सा शोरूम है जो बाइक का शोरूम है सफेद नीला आसमान है।

घर बना हुआ है जो लाल रंग की है और कांच लगी हुई है अगल-बगल दीवाल है कत्थे रंग के पर्दे लगाए है लाइटें लगाई गई है।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

हरी घास हैं पेड़ लगे हुऐ हैं हरी पत्तियाँ हैं। खिड़की बनी हुई जिसपे कांच लगे हुऐ हैं भूरे रंग के खिड़की हैं सामने सिर्फ एक गार्डन है।